और यहां पर बहोत सारे लोग हैं बहोत सारे आदमी लोग हैं भीड़ बहोत ज्यादा हो रखी है।

ये एक साइबर कैफे हैं साइबर कैफे लग रहा है कैफे रेस्टोरेंट टाइप है छोटा सा और वॉल --

काफी बड़े बड़े कपड़े लॉन्ग लॉन्ग जैकेट भी है शॉर्ट जैकेट भी है बच्चों की जैकेट भी है काफी रंग बिरंगी--

एक्स रे ऊपर लाइट भी जल रही है इधर देखने के लिए डेंटल क्लीनिक हों सकते हैं या तो एक्स रे क्लीनिक है।

और सामने जो एक हाथी है काफी बड़ा हाथी है उसके उपर एक लकड़ा खड़ा हुआ है हाथी के उपर और हठी के सुन्ड पे जो ठीके लगा हुआ है कोई --

दो गाड़ियां खड़ी हुई है यहां पर कलर की गाड़ी खड़ी हुई है दूसरी खड़ी व्हाइट कलर की गाड़ी उसी के बगल में बाइक है।

और कुर्सियां रखी हुई है सफेद कलर की और टेबल ऊपर सामने बगल में ये क्या ग्लोबल ये क्या लिखा हुआ है।

स्कूल के बच्चे हैं जोकि एक किसी मैदान या स्कूल के बाग में खेल रहे हैं टीचर्स खेला रही हैं बच्चों को--

ये एक ए_टी_एम मशीन है ए_टी_एम मशीन लगता है चालू में अभी बंद में तो नहीं लग रही है मेरे को--

कैसे क्या यूजेस क्या है कैसे डस्टबिन रखा उसके बगल में--

काफी अच्छा रेड कलर कर रखा है और सोडा साडा लिखा हुआ है इस पर--

फूल दिख रहा है और ऑरेंज कलर के हो सकता और कलर के पीले कलर के गुलाबी कलर के भी है।

अ क्रेन है शायद या फिर जे_सी_बी है क्रेन है क्रेन की दो ट्रक है एक एम्बुलेंस भी है यहाँ पे एक गाडी खड़ी हुई है ज़िप है सफेद कलर की है।

ये किसी जागरण या मंदिर का लग रहा है मुझे माता की मूर्ति है पांच मूर्ति रखी हुई है माता की सबसे बड़ी मूर्ति है काली माता की लग रही हैं मेरे को--

और एक पुजारी है एक लड़का है जो की पुजारी है वहां पर पूजा करने के लिए।

किसी के घर के आगे एक बोर्ड लगा हुआ है नीले कलर का ब्लैक स्कूटी खड़ी हुई है सामने गाड़ी भी खड़ी हुई है यहां पर--

चर्चिंग है चर्च काफी सुंदर बना रखा है ऊपर चर्च के साइन का वो लगा रखा सबसे ऊपर टॉप पे--

और वो बिल्डिंग है काफीअच्छी बना रखी है चर्च की और सामने जो गार्डन सा दे रखा है पेड़ बड़े लग रहे है हरे हरे गार्डन है।

जितने लोग हैं यहां पर जा रहे हैं बाइक्स खड़ी है काफी सारी और एक बाइक इसके आगे खड़ी हुई है।

ये फिश शॉप है मछलियां रखी हुई है बहुत सारी मछलियां है यहां पर तरह तरह की मछलियां तरह तरह की नहीं एक तरह की मछलियां काफी सारी मछलियां--

निर्बाध पेट्रोल नाम का ट्रक है लेकर जा रहा है। उसको दो नीचे लड़का बैठा हुआ है।

ओ काफी अच्छे लोग हैं लग रहे हैं टहलते हुए हैं और खेल रहे हैं क्रिकेट ।

जगह है कोई तो जगह है इधर दो लड़किया खड़ी हुई है एक लड़कियों ने सफेद कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जींस डाल रखी है पेंट जो है ब्लैक कलर की पहनी हुई है।

और एक मजदूर अपने घर के ऊपर सीमेंट ले के जा रहा है ऊपर के तरफ और--

ये एक शॉप है गोगल्स गोगल्स की शॉप है चस्मो की चश्मे की दूकान है यहाँ काफी तरह कर चश्मे लगे हुए है यहाँ पे रखे ।

और गुब्बारे लगा रखे हैं गुलाबी कलर और सफेद व्हाइट कलर की--

गेंदे के फूल लग रहे हैं ऑरेंज और पीले कलर में गेंदे के फूल है।

डी_जे और लाइट डेकोरेशन का काम करते हैं दुकान वाले बहुत ही बढ़िया है फिर तो--

यहां पर गाड़ी है जो की उसकी सफाई कर रहे है सर्विस कर रहे हैं क्लीन कर रहे हैं अपनी गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं।

दो लड़के हैं जो कि सामने की तरफ जा रहे हैं और सामने जो है एक ट्रक खड़ा हुआ है उसी ट्रक के बगल में जो है गाड़ी खड़ी हुई है जीप बोल सकते हैं उसका जीप होगी और--

ई शायद यहाँ लगा रखे हैं थ्री स्टार ए_सी है और ये कुछ लिखा हुआ है रिकनेक्ट --

ये हाईवे का मुझे पेट्रोल पंप लग रहा है काफी बड़ा पेट्रोल पंप है ये--

यह कोई घर है घर में इतनी अच्छी तरीके से सजा रखी है चेयर लगी हुई है।

और एक स्कूटी जा रही है सामने से उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है और सामने एक लड़का चलता हुआ जा रहा है वॉक करते हुए उसी के सामने सड़क पे--

व्हाइट कलर की काफी सारे चेयर्स है टेबल्स हैं लोगों के लिए--

शॉप है ये शॉप में सारा सामान लगा हुआ हैं अ किराने की शॉप है जो भी सामान मिलता है सब--

ये कोई कराटे क्लास है और कराटे क्लास कराटे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कराटे की तैयारी कर रहे हैं।

और बच्चे लोग स्काई यूनिफॉर्म लड़कियां अलग अलग कलर में--

खाली रोड है रोड के सामने जो एक गाड़ी आ रही है सफ़ेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई है इसके सामने बगल में दो रोड है सामने--